और यहां पर एक बोर्ड भी दिख रहा है।

और एक बाहर बोर्ड है जिसपे आर्टिस्ट लिखा हुआ है।

इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं।

इस इमेज में एक जंगल की फोटो नजर आ रही है।

और सीढ़ियां लाल रंग की पेंट है।

इस इमेज में गुलाब के फूल हैं।

और बोहोत ही सुंदर दिख रहे हैं।

एक नीले रंग के दो गोल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में दो घर नजर आ रहे हैं।